ये एक किराना दुकान है जहां पे बहोत सारे समान रखे हुए हैं जैसे तेल साबुन और भी बहोत सारे समान यहां पे हैं।

ये एक सैलून है और यहां पे बहुत दो तीन लोग मौजूद हैं और यहां पे बाल कटवा रहे हैं और पर्दा भी लगा हुआ है।

ये एक बड़ा फ्लैट है जहां पे लाइटिंग दी हुई है और यहां पे बहोत सारे फैन भी लगे हुए है और बुक्स वगैरा भी है।

काउंटर है और यहां पे एक लोग बैठे हुए हैं चेयर पे--

और यहां पे एक काउंटर भी है।

ये एक पहारी इलाका है जहां पे बहोत सारी पत्थर रखी गई हुई है और यहां पे एक दो पेर भी हैं--

यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहोत यहां पे कपड़े भी रखी हुई है और ये हरा कलर के हैं।

ये एक शॉप है जहाँ पे एक गेट है और यहाँ पे कैंपुटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे एक काउंटर भी है।

ये एक बुक की दुकान है और यहाँ पे एक आदमी काउंटर पे खारा हुआ है और यहाँ पे बहोत तरह के बुक रखी गई है।

और बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

ये एक बुक की दुकान है जहां पे काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है और दो कुर्सियां भी हैं।

यहां पे एक ग्राउंड है और यहां पे दो तीन लोग खड़े हैं और एक गाड़ी भी लगा हुआ है और एक बड़ा सा बिल्डिंग है।